और एक छोटा सा पौधा लगा हुआ है जिसमे फूल उगे हुए है जो पीले कलर के है यहाँ पर देखने मे लग रहा है यह दिन का सीन है ऊपर आसमान दिखाई दे रहा और सफेद कलर का है ।

टाइल्स दिखाई दे रहे है जो ब्लैक कलर के है सामने गेट दिखाई दे रहा है यहाँ पर्दे लगे हुए है यहाँ पर पर्दे दिखाई उ दिखाई दे रहा है यह पॉट दे लगा हुआ है यहाँ पर सा ऊपर छत दिखाई दे रहा है जो सफ़ेद कलर पुता हुआ है यहाँ पर चटाई लग --